लगाकर काम कर रहे है और कुछ बच्चों ने अपना नाक मुंह नहीं ढका हुआ है।

इसमें ए पानी का टैंकर भी लगा हुआ हैऔर इसमें बहुत सारी बाल्टियां और टप है बड़ी-बड़ी।

लाइटनिंग पूरी प्रॉपर नहीं है यहां पें और कुछ बच्चे हैं और कुछ बड़े हैं कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं जो यहां पर नजर आ रहे हैं।

यहां एक बहोत सुंदर व्यू नजर आ रहा है पारक का और ग्रीनरी ग्रीन यहां पर हरा हरा घास है।

यह एक रेस्टोरेंट है इसमें बहोत अच्छी डेकोरेशन की गई है इसमें बहोत सुंदर लाइट का प्रबंध है।

दरवाजे के जाने से रास्ता है जो निकल जाता है इस--

ठीक करने का यहां पर काम किया जाता है यह एक गैरेज --

यहां पर डेकोरेशन कर रहे हैं जो भाई लोग हैं बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही है।

बहुत बड़ा हार है और इसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है और यहां पर टॉवेल पड़ा हुआ है।

मंदिर का सामान यहां पर मिलता है पूरा फूलों का अरेंजमेंट बना हुआ है।

और एक कुर्सी रखी हुई है जिसमें बैठ सकते है हमारी जरूरत का समान यहां पर अवेलेबल है।

जिसमें बहुत सारे लोग अह गायक गायक हैं गा रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं और कुछ लोग यहां पर सुन रहे हैं।

साफ सफाई कर रहें हैं और इसमें हरे रंग के बड़े बड़े द्रखत लगे हुए हैं इसके बाहर और सामने कोई घर बन रहा--

और हरी हरी घास है और इसमें थोड़ा सा पत्थर--

वहां नीचे की चलने के लिए स्लाइड बनाई हुई--

एक बेयरिंग बोरंग वर्क्स और साथ में इसके कटिंग की शॉप।

यह एक बहोत सुंदर पारक है इसमें फूलों के साथ डेकोरेशन की गई है और इसमें हरे हरे--

यह एक बहुत बड़ा शदी का पैलेस है।

जिसमें शादी हो रही है और डेकोरेशन बहोत अच्छी की गई है।

दिख रहे हैं और यहां पर लाइट इतनी अच्छी--

यह एक फर्नीचर की शॉप है प्लास्टिक की चीजे इसमें बनाई जाती है।